घर है जहां पे अनेको इमारत --

यह एक हवाईअड्डा है।

और बच्चे भी काफी मन लगा के पढ़ रहे हैं।

यह एक स्कूल है जहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी --